साइकिल्स खड़ी नहीं है अंदर की तरफ कई सारी लाइट जल रही है कांच लगे हुए है बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियां खड़ी हुई है सफाई --

सामने की तरफ एक छोटी सी दुकान बनी हुई है इसका शटर उठा हुआ है एक ताला नजर आ रहा है एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग सफेद है। नील रंग में--